यह एक रेलवे स्टेशन है।

आदमी ने हाथ में कुछ पड़ा है।

और दो तीन ग्लास रखे हैं।

और थोड़ी दूर पर एक ग्रीन कलर का जाल है।

यहां पर बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।